गेट दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी गाड़िया है एक गाड़ी का नटवाल्ट पूरा निकला हुआ है यहाँ पे एक खम्भा दिख रहा है।

यह साइकिल है इसमें दूध का डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे एक खम्भा है यहाँ पे लोग दिख रहे है।

जीब है ऑटो बहुत सारी है आ रही है यहाँ पे पेड़ है बहुत सारे बिल्डिंग्स है यहाँ पे लाइट के खम्बे है मोटर साइकिल है।

ये एक न्यू वर्मा साइकिल स्टोर गैहरा बाजार बलराम बलराजपुर लिखा हुआ है यहाँ पे जैन होंडा जैन साइकिल फाइनेंस सुविधा उपलब्ध लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक मंदिर है मंदिर श्री --